पेड़ का नीचे का हिस्सा दिख रहा है।

बड़े-बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

लाइट्स लगी है नीले कलर की पीले कलर की।

रास्ते में बहोत से लोग आ रहे हें जा रहे हैं।

चारों तरफ घर बने हुए हैं।

और लोहे की और सिमेंट की बाउंड्री बनाई गयी है।

बिल्डिंग में बहोत सारे खिड़कियाँ और गेट बने हुए हैं।

ऊपर पर्पल कलर का पेंट किया गया है।

यहाँ पे बड़ा-सा प्लेग्राउंड है।

गुबंद बनाए गए हैं छोटे-छोटे --

लोहे के रॉड लगे हुए हैं अ पिलर बन रहें हैं।

ऊपर सफेद कलर का छत है।

यहाँ पे नदी के घाट का दृश्य दिखाया गया है।

कुछ आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं।